लौट्रिंग है यहाँ पर कपड़ा धुलाई होता है।

ऐसे रख भी सकते।

मेस के काम कर रहें हैं बना रहें हैं रोटी है चावल है।

खाने की बहुत सारे चीज़े मिलते हैं मेले में।